हमें यहां पर एक डमी दिखाई दे रही है जो की कुर्ता पहना है रेड कलर का हमें प्लाजो भी दिख रहा है हमें यहां पर एक कमरा दिख रहा है।

हमें यहां पर काला आसमान दिख रहा है हमें यहां पर चांद दिख रहा है हमें यहां पर रोशनी दिख रही है डस्टबिन दिख रहा है ग्रीन कलर का है।

ब्रांचेस दिख रही है येलो है ऑरेंज है हमें यहां पर घास दिख रही है हमें यहां पर रोड भी दिख रही है।

ऊपर एक मार्केट दिख रहा है हमें यहां पर बहुत सारी सब्जियां दिख रही हैं गोभी दिख रही है हमें यहां पर लहसन दिख रही है प्याज दिख री कैरेट दिख रही है।

हमें यहां पर एक टेबल दिख रही है कुछ खाली प्लेट दिख रही है सफेद कलर की कुछ भरी हुई दिख रही है चावलों से दो चम्मच दिख रही हैं लोग हमें दिख रहे हैं।

पीले कलर के चावल है टिशू पेपर दिख रहे हैं टिशु बॉक्स दिख रहा है कांच का गिलास--

खिलौने दिखाई दे रहे हैं कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं कार्टूंस दिखाई दे रहे हैं हमें यहां पर दिवालें दिखाई दे रही हैं।

पहाड़ दिख रहा है काले कलर का हमें यहां पर कोहरा दिख रहा है हमें यहां पर थोड़े-थोड़े काले सफेद आसमान दिख रहा है।

हरी कलर की पेड़ पौधे दिख रहे हैं हमें यहां पर लाइटिंग के खंबे दिख रहे हैं हमें यहां पर पहाड़ दिख रहे हैंनीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है हमें यहां पर एक रोड भी दिख रहा है।

कबूतर का कलर जो है ब्लैक एंड व्हाइट है हमें यहां पर टीन शेड भी दिखाई दे रही है एक टब दिखाई दे रा है दाना दिखाई दे रहा है।